नीचे लेटे हुए हैं और कुर्सी पर--

मर्द और खवातीन हैं।

और इस काउंटर के ऊपर ही एक ए_सी लगा हुआ है।

और इस पौधे के थोड़े से फासले पर एक सरसबज दरख्त लगा हुआ है।

और इस घर के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ा है जिसके पास एक आदमी है।

ये एक पेट्रोल पंप है।

जिसने सर पर सफेद टोपी ली हुई है।

ये एक ग्राउंड है जिसमें बहुत से आज लड़के और लड़कियां हैं।

जिनमें तीन पिलर लगे हुए हैं ।

जिसके साथ एक दीवार पर स्टीकर लगा हुआ है।

सड़क के इर्द-गिर्द बहुत सी हरियाली है और घास है।

इस इमारत में चार खिड़कियां हैं।

जिनमें से एक इमारत का रंग सफेद है।

और के साथ इस हॉस्पिटल का नाम डीओस हॉस्पिटल है ।